इस फोटेम इस फोटो में आप देख सकते हैं। आपको एक बिल्डिंग बनी नज़र आ रही है। यह बिल्डिंग एक होटल है। आप देख सकते हैं इस होटल में आपको अलग-अलग रूम दिखाई दे रहे हैं। आपको विन --

शॉप का नाम दिल्ली जनरल स्टोर है जहां आप देख सकते है आपको समान बाहर टंगा हुआ दिखाई दे रहा है।

नज़र आ रहा है और आपको एक बोर्ड लगा दिखाई दे रहा है जिस पर किड्जॉन लिखा हुआ है।